यहाँ पर एक पोस्टर टंगा हुआ हैं।

बहुत सारा दुकान है और यहाँ पर ऊपर में लिखा है की भूपेश बुक डिपो इनो कवाड़ी केंद्र जन सेवा केंद्र ऐसा लगता है की यह एक लोक सेवा केंद्र हैं।

और बहुत सारा यहाँ पर समान है घूमने जाने वाला और बहुत सारे पत्थर भी है बहुत सुन्दर --

लगता है की यह एक सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया है सेंट्रल बैंक का बैंक है जैसे लग रहा है ऊपर में सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया लिखा है उसी को मैं अभी पढ़ रहा था।

यह एक रेस्टोरेंट है यहाँ पर बहुत सारे मिठाईयां है हमें भी खाना चाहिए मिठाईयां बहुत न्यू न्यू प्रकार के मिठाइयां बनी हुई है और एक लड़का है जो मिठाई बेच रहा ऐ ।

यह एक चर्च है ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि वैसा यहाँ पर नज़ारा दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए है महिला भी बैठी है और कजरा फूल कजरा से स अपना बाल को --

और यहाँ पर लगता है की स और भी फूल है पीछे में और बहुत सूंदर नज़ारा दिख रहा है।